ये पार्क बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए काफी बड़े-बड़े और महंगे झूले लगे हुए हैं।